एक बड़ी नीले और सफेद रंग की इमारत पर राज मंदिर लि हुआ है।

पृष्ठभूमि में एक बड़ा पूल दिखाई दे रहा है।

मुझे सुंदर पहाड़ी दृश्य दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ और झाड़ियां वातावरण को--

सड़क पर कुछ गाड़ियां और एक ऑटो रिक्शा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेशन की छत लोहे की बनी हुई है।

कुछ लोग बरमादे में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ए_टी_एम के बाहर दीवार गुलाबी रंग की है।

मौसम साफ और शांतिपूर्ण लग रहा है।